नीचे कैंपर पड़ा है पानी पीने के लिए लोटा पड़ा है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है।

ये मेन बाजार की फोटो मुझे यहां पर एक--

कई सारे डिब्बे है जो सेम कलर के और सेम साइज की है एक येल्लो कलर का टर्मिनेटर है।

नीचे बहुत सारा कचरा बिखरा हुआ है इधर एक दुकान है वो दुकान बंद है दरवाजा बंद है और बाहर कुछ पाइप भी पड़े हैं बाहर दीवार के ऊपर --

इनके पीछे बहोत ही बड़े बड़े जंगले लगे हुए जो कि लोहे के है एक चार्ट चिपका हुआ है गाड़ी के पीछे--

ये एक बुक स्टोर है इस दुकान के अंदर बहुत सारी किताबें है ऊपर पंखा लगा हुआ है सामने ट्यूब लाइट जल रही है इस दुकान के--

ये एक दुकान है ऊपर नाम लिखा है गोली बार।

इसके अंदर दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है ऊपर लोहे की चदरें लगे हुए हैं जंगल लगे हुए हैं।

आदमी जा रहा है जिनके ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हाथ में मोबाइल है बिल्डिंग के आगे दो गाड़ियां खड़ी हैं।

और स्टेज के ऊपर लाल कलर की दरी बिछी हुई है एक आदमी खड़ा है वो माइक में कुछ बोल रहा है ग्रे पंखा लगा हुआ है।

पीछे दीवार के ऊपर एक कैलेंडर चिपका हुआ है नीचे कुछ डब्बे पड़े हैं इधर बहुत सारे पैकेट पड़े हैं सामने भी --

और बीच में जो ये फर्नीचर पड़ा है उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और सामने और भी दो साइड खिड़कियां हैं खिड़कियों के अंदर से --

बिल्डिंग के जस्ट आगे एक बहोत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है इधर साइड और भी बहोत सारी दुकानें बनी हुई है।

इस फोटो में दिखाई दे रहा है अजंता डेयरी उसके आगे बहोत सारे लोगों की भीड़ है कुछ महिलाएं हैं कुछ आदमी खड़े हैं दो मोटरसाइकिल खड़ी है।

पहने हुए है पीछे कुछ कुर्सियां पड़ी हैं।

यहां पर ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर बहोत सारे आदमी बैठे है पीछे बहोत ही बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है।